और बहुत सारे लोग भी इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत सारी लोहे की कुर्सियां जिन पर दो आदमी बैठे हैं और काउंटर के पास एक नर्स खड़ी है।

भारी मैट बिछी हुई है एक व्यक्ति नीचे बैठा भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में यह एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

ये लाल मैट बिछी हुई है जो अलग अलग खाने दिखा रखे हैं।

एक बच्चा दिखाई दे रहा है और दो लड़कियां साइड से जा रही है रास्ते में बहोत सारी गाड़ी।

बीच में हरी घास और बहोत सारे फूल भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में यह एक दुकान है।

और ये दवाइयों की दुकान है जिसपर एक शीशी पर एप्पल लिखा हुआ है और इसका गेट कांच के शीशों का है।